बोहत बड़ा गार्डेन बना हुआ है उस गार्डेन में बहुत छोटी-छोटी क्यारी बनी हुई है उनमे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है।

ये एक चिड़िया घर है इस चिड़िया घर में बहुत सारे पक्षी है यहाँ पर बहुत सारी बतक है कुछ--

बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है दूर-दूर तक पेड़ है।

यहाँ पर बहुत सारे डलिया रखी हुई है यहाँ पर तराजू रखा हुआ है।

टा हुआ है यहाँ पर बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पर बहुत सारे खिड़की जंगले लगी हुई है।

खिड़की जंगले लगे हुए है यहाँ पर नीचे ग्राउंड है इस ग्राउंड में बहुत सारी हरियाली है पास में--

यहाँ एक नदी है इस नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है नदी के पास एक--

--सारे ए_सी और सारे पंखे झूमर लगे हुए है।

लगी हुई है ये मंदिर बहुत ही सुंदर है इसमें बहुत सुंदर पैंट लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे मुर्गे मुर्गीया है इनमे से एक मुर्गे का मुँह--

यहाँ पर लाइट की डोरी खम्भा लगा हुआ है।

मशीने रखी हुई है बम्बल रखे हुए है बहोत सारे स्टूल रखे हुए है।

यहाँ पर कोई कल्चर प्रोग्राम है यहाँ पर बहोत सारे लड़के नृत्य कर रहै है।

यहाँ पर कथक नृत्य चल रहा है यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई हैं।

अलग -अलग रंग के साड़ी पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रही पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं।